एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है।

इसे दिखाने का प्रतीक है दुबई क्योंकि दुबई में भी ऐसे-ऐसे ही घर रहते हैं।

यह एक बहुत बड़ा-सा घर है जहां पर--

पार्क है पर यह एक पार्क है जहां पर फैमिली में सब कोई आते हैं और मै मस्ती करते हैं खूब मनोरंजन करते हैं।

एक बहोत ही महंगे दामों पर आता है और यह आदमी इस फोर व्हीलर को अच्छा कर रहे हैं।

यहाँ पे एक लड़की है जो अपने बाल को फोटो खींचाया है जिसकी बाल बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही है।

सभी लोग नहीं बना सकते हैं जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं वही लोग इसे बना सकते हैं इसके अलावा कोई लोग नहीं बना सकते हैं।